ये तस्वीर किसी हॉस्पिटल के अंदर की है।

इधर दो ट्रांसपेरेंट बॉटल है जिनमें कुछ लिक्विड रखे गए हैं।

एवं ऊपर की ओर एक लाल रंग की पट्टी है।

तस्वीर किसी पौधे की नर्सरी की है।

तथा एक मूर्ति रखी हुई है जो विष्णु जी की है।

तथा सामने की ओर एक सफेद रंग की कुर्सी रखी हुई है।

पर की सीलिंग में बहोत सारे छोटे छोटे लाइट्स लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे जिम करने के सामान रखे हुए हैं।

सीलिंग काले रंग का एवं उनमें लाइट्स लगे हैं।

इक जगह इसमें पनीर चीली हॉट डॉग भी है।

तस्वीर में एक फाउंडेशन लिखा हुआ चिपका हुआ है।

ई में एक बड़ी से बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो सफेद रंग की है।

जिसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी है।

ब्लू रंग के बैरिकेट्स दीवार छोटे छोटे बनाए गए हैं।

बहुत सारे हरे हरे पेड़ पौधे भी हैं।

सजावट के लिए बहोत सारे पेड़ एवं पौधों को भी लगाया गया है।

जिसके ऊपर करी लीफ लिखा हुआ है एवं पत्ते का एक लोगों भी बनाया हुआ है।

पीछे की ओर जाने के लिए बड़े बड़े से गेट बनाए गए हैं।

उसके बगल में बहुत सारा चम्मच एवं नैपकिन रखा गया है।

के ऊपर एक बड़ा सा बोड लिखा लगा हुआ है।

बाहर की ओर एक बेसिन है तथा बाल्टी भी रखा हुआ है।

इसपे एक बड़ा सा पोस्टर है जिसके ऊपर हमारे प्रतीक चिन्ह वन्य जीव लिखा हुआ है।

तस्वीर एक खुले जगह की है यहां बहुत सारे पत्थड़ है।

तथा नीचे की और कुछ सूखे सूखे घास उगे हुए हैं।

सामने की ओर एक लड़की बैठी हुई नजर आ रही है जिसने काले रंग के कपड़े से ढक रखा है खुद को।

उसके बालों को बनाया जा रहा है तथा उसमें लाल रंग के बहुत सारे क्लिप्स को लगाया गया है।

बीच में अंदर कुछ रखा गया है जिससे बहोत सारे फूलों से सजाया गया है।

ऊपर की ओर टाटा स्काई का केबल लगा हुआ है।

वीर में एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है जिसका रंग नीला है।

नीचे की ओर बहोत सारे पत्ते गिरे हुए हैं तथा बड़े बड़े बोल्डर्स जैसे पत्थर रखे गए हैं।

उन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं।

इसमें दी काफी पायलट लिखा हुआ है।

यहां के बेंच पर संत जेसेप्स स्कूल लिखा हुआ है।

पिंक कलर की साड़ी पहने एक टीचर भी बैठी हुई है।

पीछे की ओर बहुत सारे गेम लगे हुए हैं।

यहां का थीम बहुत ही रंग बिरंगा सा है नीला पीला हरा लाल।

ये फोटो एक मॉल के अंदर की है।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

बीच में नीले रंग का एक खंभा भी है।

अंदर की ओर बिल्कुल अंधेरा काला सा दिखाई दे रहा है।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

बगल में एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है।

नीचे की ओर एक बड़ा सा फ्रिज है जिसमें बहोत सारे डेरी मिल्क किट कैट फाइव स्टार रखे हुए हैं।

पार्लर ओपन लिखा हुआ है तथा ग्लास भी लगा है।

ओजन जोन आइसक्रीम लिखा हुआ है।

एक आदमी में ऑरेंज रंग की शर्ट पहन रखी है।